बहुत लंबी-लंबी सफेद कलर की लाइट भी दिख रही है।

इस पिक्चर में हम एक कार पार्किंग एरिया को देख रहे हैं।

कुछ गाड़ियां कई कलरों में दिख रही हैं कुछ सफेद कुछ ग्रे --

दुकान के अंदर बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं दुकान के बाहर ग्लास भी दिख रहा है जो चारों साइड ग्रिल से बंधा हुआ है।

ऊपर पीली लाइट दिख रही है साइड में एम_सी_बी बॉक्स दिख रहा है।

मशीन के किनारे एक चौकोट टेबल रखी हुई है टेबल के बगल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

एक टेबल भी रखी हुई है एक ड्रम भी रखा हुआ है।

ऊपर एक हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं तीन का सेट लगा हुआ है अलमुनियम गेट के बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई है बाइक के ऊपर मिरर दिख रहा है नीचे साइड --

इस चित्र में हम एक नया भवन का निर्माण होते हुए देख रहे हैं जिस पर छत का काम चल रहा है।

कुछ जमीन में पेड़ लगे हुए हैं कुछ जमीन में बैठे हैं आदमी--

इस चित्र में हम एक लकड़ी की प्लाई की दुकान देख रहे हैं जो बहुत लंबी दिख रही है।

साउंड बॉक्स के ऊपर एक लोहे का राड रखी हुई--

सामने साइड एक बड़ी सी विंडो लगाई हुई है जिसमें ग्लास काम किया गया है।

उसके ऊपर भी विमल स्टोअर मर्चेंट लिखा हुआ है जो नीले कलर से लिखा हुआ है।

सामने टीचर हाथ में बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कुछ पढ़ा रहा है।

केज आकार की है टाइल्स के चारी बॉर्डर में ब्लैक कलर का डिजाइन बना हुआ है।

मेन जगह में बहुत सारा एक एक काले कलर का फूल बना हुआ है।

एक आदमी के द्वारा टाइल्स को पकड़ा गया है।

बिल्डिंग के बाहर छोटे छोटे हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक चेयर भी लगी हुई है सामने एक सिलेंडर दिख रहा है पाइप दिख रही है कुर्सी भी दिख रही है सफेद टाइल्स भी दिख रही है।

टेबल में कुछ मोबाइल रखे हुए हैं एक मैट भी बिछी हुई है।

इस पिक्चर में हमें तालाब देख रहे हैं तालाब का पानी हरे कलर का दिख रहा है।

ऊपर सफेद नीले कलर के आसमान भी दिख रहे --

उद्यान के बाहर एक लाल कलर की कुर्सी लगी हुई है।

कुछ लोहे की रॉड दिख रही है नीचे कुछ कचड़ा भी दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक भवन को देख रहे हैं भवन के बाहर एक पुलिस के ड्रेस में पहना हुआ आदमी खड़ा है।